मुझे इस फोटो पर एक घर दिखाई दे रहा है।

ऑटो में दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो में एक शटर दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो पर लोग दिखा --

मुझे इस फोटो पर सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर दूल्हा दुल्हन दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर शटर दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर एफ_आई_एन_ओ एल_इ_ए --

एक औरत दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर झउआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर दो लड़के दिखाई दे रहें हैं।

मुझे इस फोटो पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो पर आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे इस फोटो पर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।